तीन-चार बस लगा हुआ है जो की बहुत ही खुबसूरत लग रहा है देखने में | तीन-चार आदमी भी है उसके बगल में खड़ा है | बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में | अ त कार में बहुत सारे चीज़ लिखे हु --

है ये तिलंगना कार है | नीचे में बैग रखा हुआ है अ झोला है बोटल है।

कोई कॉलेज है जो की जिसमें अन्दर में बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं ब अ एक अ दो-तीन गाछ लगे हुए हैं बहुत मतलब हरा-भरा है| बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत खूबसूरत है और की पीछे में वाइट कलर की मकान है जो --

अ दो-तीन लोग जो की बैठे हुए हैं कुछ लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ रखी हुई है जो की अच्छे सामान जो लगाए हैं कार में ब बहोत सारे खूबसूरत लग रहे हैं देखने में।